इस चित्र में एक पुरातन काल की बिल्डिंग का फोटो दिखाई दिया है उस बिल्डिंग के अंदर --

जो इमारतें हैं वो इमारतों की दीवारें जो हैं --

और जो फोटो के अंदर एक कमरा दिखाई दिया है जिसके अंदर झाड़ लगा हुआ है।

नेशनल फ्लैग के नीचे जो हैं एक झाड़ हैं और कुछ बच्चे दिख रहे हैं।

अ नाले के अंदर अ कुछ पत्थर दिखाई दे रहे हैं। नाला जो है बहता हुआ नाला दिख रहा है।

सामने वाले चित्र के अंदर एक आदमी ने अ ऊपर से बिल्डिंग से फोटो लिया हुआ है जिसमें कि पार्किंग लॉट में कार दिख रही हैं।

और जो सलून के सामने जो हैं सीढ़ियों के बाजु में। हाथ और मुँह धोने के लिए अ बेसिन रखा हुआ है।

हिरन्स दिख रहे और हिरन के बच्चे दिख रहे है।

किसी फंक्शन में एक बंदे ने अपना फोटो निकाल निकाला हुआ है। अ फंक्शन का जो बैकग्राउंड है वो दिखाई दे रहा है।